यह एक दुकान है और यह पेंसिल रबर शोपनर कट्टर आदि की चीजे यहां मिलती हैं।

यह एक घूमने की बोहोत सुंदर जगह है जोकि काफी टाइम पुरानी जगह ह --